और गेट के बाहर एक लड़का खड़ा है।

और यह कप अलग अलग डिजाइन के हैं।

और यहां पर कुछ ट्रे रखी गई है।

और यहां पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

और यहां पर कुछ पोस्टर लगाए गए हैं।